यहा सेनीटरी पेड रखा हुआ है अंदर में और कॉलगेट है थैला है |

ये दुकान है | इसमें रसगुल्ला है लड्डू है धूली है काला रसगुल्ला है | एक नंबर सब शीशा में रखा हुआ है।

एक आदमी जिम कर रहा है एक आदमी पीछे दौर रहा है वो आदमी हैवी वेट उठाने वाला वो मशीन पे वो कर रहा है जूता पहना हुआ टी शर्ट पहना हुआ लोअर पहना हुआ।

बहुत सारा फूल-वूल है ये गुलाब है फिर यहाँ पे भी बहुत सारा फूल है फिर वहाँ पे भी फूल है ये व्हाइट कलर का फूल है ये येलो कलर का फूल है ये पिंक कलर का फूल है पीछे दिख रहा है।

यंहा पे एक आदमी खड़ा है वाइट कलर का शर्ट हाँथ में हेलमेट लेके ब्लैक कलर का पेंट आदमी खड़ा है कमर पे हाँथ रख के ब्लैक कलर का पेंट एक आदमी खड़ा चेक कलर का टी-शर्ट --

कुछ इसका पूजा हो रहा है यहाँ पे बहोत सारा वो क्या बोलते है डंडा को एक साथ बांध के उसे पर कपड़ा लपेट के रेड और येलो में कुछ इसका पूजा हो रहा है।

ये दूर में भी बहोत सारा आदमी लोग है वो आग जला रहे है ये यही को बांध के कपड़ा लपेट के कुछ इसका पूजा--